पौधों में हमें फूल भी खिलते हुए नज़र आ रहे हैं देखने में यह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ--